और एक इंसान बस पे चढ़ रहा है और इसके जस्ट आगे का इमेज ये है कि एक बड़ा-सा पेड़ दिख रहा है।

और गिटार भी पड़ी हुई है और एक पानी बोतल भी।

यह जो दृश्य है वो मंदिरों का दृश्य है जो पीछे वाला मंदिर है वो सबसे उच्चा मंदिर लग रहा है।

एक गेट है। गेट के बगल में दो साइकिलें दीवाल से सटी हुईं हैं और एक जनरेटर है।

यह एक कपड़े का शॉप है जहाँ की शेरवानी और लेहंगा-चुनरी औरतों और पुरुषों के लिए --

आटो खड़ीं हुईं है और अ ब बगल में पेड़-पौधे भी हैं और ये रात का दृश्य है काफी लाइट जल रही हैं यहाँ --

औ तीन सेट कुर्सी दिख रहीं हैं और अ दिवाल पर काफी सारे निर्देश लिखे वे हैं।

और जिस पे कलश रखे हैं वो सीढ़ीदार की तरह है और दिवाल से लगा हुआ गणेश भगवान की मूर्ति है।

और ये सामने जो है एक बड़ा सा वाटरफॉल वाला फंखेदार दिख रहा है और छोटे-छोटे सात से आठ हैं वाटरफॉल दिख रहे हैं। जिसमे की लाइट भी लगी हुई है।

और जिस पर एकाद लोग बैठे हुए हैं और एकाद लोग खड़े हुए हैं और कुछ लोग जो हैं की वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं।